और ये गौतम भगवान हैं| ये गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने सारे संसार को बहोत अच्छे-अच्छे उपदेश दिए हैं।

और यहाँ का जो रहने का जो आनंद ही कुछ और है।

और जिसके जोकि दाँत गड़बड़ होते हैं वो अपना ठीक कराते हैं। दातों का दर्द भी ठीक होता है। नए दाँत भी लगवाए जाते हैं।